ज्यों ते हम सील बोल्दाे वो कठ्ठा छन करयां |

इ फोटो पर हम्थे दुइ-तीन सोफा छन दिख्याणा जो ऊपर के सुन्दर-सुन्दर दिखयाणा के छै यूं।

अर लोग दुकानि मा पत्ता छन ल्योणा और कुछ गाड़ी वाला लोगों कू सवारी छन भरन्या अर उथें उंकि जगह तक पहुँचोण।

जूं बिटिन कई सारा डब्बा छन बणाया।

इ फोटो पर हम कुछ आदमियों सण देख सकदु जू पहाड़ ऐंच जू छन चढ़ना की कोशिश छन कना।